सामने बहुत-अ-सी गन दिखाई दे रही है अ-और परछाई पे अ-खिड़की दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रही है| एक बन्दूक का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहुत बड़ा भवन दिखाई पड़ रहा है| लेफ्ट साइड पे भवन दिखाई दे रहा है खंबे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमे सीलिंग लाइट दिखाई दे रही है बाहर कुछ पेड़-पौधे दिखाई पढ़ रहे हैं।

यह एक शोरूम बना हुआ है जिसमे रेलिंग दिखाई दे रही है सीढ़ियां दिखाई दे रही है कुछ गाड़ियां नजर आ रही है दो आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बहुत बड़ा ग्राउन्ड नजर आ रहा है। बहुत से भवन दिखाई दे रहे है।

सामने एक शोरूम बना हूआ है बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं| सीढ़ियां दिखाई दे रही है रेलिंग दिखाई दे रही है मिट्टी जैसा दिखाई पड़ रहा है।

एक आदमी खड़ा हूआ है झंडा दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रही हैआसमान दिखाई दे रहा है।

सामने एक शोरूम बना हुआ है जिसमे बाइक और स्कूटी रखी हुई है कुछ लोग खड़े हुए है।

सीढ़ियां दिखाई दे रही है। चैनल गेट नजर आ रहा है गाड़ियां दिख रही है पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई पड़ रही है।

सामने एक दुकान दे रही है राइट साइड पे शटर दिखाई दे रही है| सामने एक बाइक खड़ी हुई है एक टेबुल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का।

सामने एक शो रूम दिखाई पड़ रहा है जिसमें बहुत सी सजावट दिखाई दे रही है जो की फूलों की है रेलिंग दिखाई दे रही है।

यह कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जो ब्लू कलर और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं| राइट साइड पे एक इमेज दिखाई दे रहा है| हम्म-सामने गेट और बाइक दिखाई पड़ रही है।

सामने एक शोरूम दिखाई पड़ रहा है जिसमे लेफ्ट साइड पे साइकिल और राइट साइड पे स्कूटी दिख रही है जिनका कलर रेड एण्ड ब्लू दिखाई दे रहा है।